देखने में यह पानी बिल्कुल साफ--

पोस्टर का लग रहा है इसके ऊपर डिपार्मेंट आफ पोस्ट लिख--

देखने में यह बहोत ऊंचा पहाड़ है।

यह दृश्य हमें किसी करक्ष का दिखाई दे रहा है।

देखने से यह तस्वीर हमें किसी--

देखने से यह दृश्य हमें किसी--

देखने से यह दृश्य हमें किसी--

दुकान को नजर आ रहा है।

घर पूरा लड़ियों से सजा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य हमें किसी गैराज का लग--

इस दृश्य में हमें एक स्टे--

संतरे रंग की छोटी-छोटी मशीन्स पड़ी हुई नज़र --

इसमें प्लस का सिंबल भी बना हुआ है।